यहाँ का दृश्य काफी डरावना लग रहा है।

कुछ लोग सामग्री लेकर खड़े हैं तो कुछ लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर एक बस खाड़ी हुई है नज़र आ रही है तो दो बसे इधर आते हुए नज़र रही हैं।

यहाँ पर कई लोग एकत्रित हैं यहाँ पर कुछ स्त्रिया भी हैं तो कुछ पुरुष भी हैं।

यह गाड़ियाँ एक दूसरे के आगे पीछे लगी हुई है सड़क काफी अच्छी है जो बहुत ही अच्छे तरीके से ब --

यह एक छोटी सी दुकान बनाई गई है जो मंदिर टाइप की है।